बहोत सारे तंबू से लगाए हुए है डंडे से उसके पास बहार बहोत सारे आदमी दिख रहे है जो काम कर रहे है।

यह व्यू बहोत ही सुंदर है आसमान का भी तो बहोत सुंदर है और नीचे बहोत सारी किश्तियां वगैरह पड़ी है नीचे सारा पानी भी पड़ी है ऐसा जैसे यहां पे बर्फ --